इसके आस पास और भी लेजर सेन्टर और बहुत सारी दुकानें हैं।

यहां कुछ गाड़ियां भी खड़ी है।

इस दुकान में बहोत सारे लैपटॉप फर्नीचर रखे है।